इसका जो कलर है सीढ़ी का है वो ब्लू कलर का है और चारों तरफ से यहां पे हाथा मारा हुआ है।

इस दृश्य में यह दिखाया गया है कि यहां पे बहुत सारा कार है।

इस दृश्य में दिखाया जा रहा है की यहां पे एक होटल है इस होटल में बहुत सारा कुर्सी और बेंच रखा हुआ है।

दृश्य में दिखाया गया है कि यहां पे थोड़ा सा कमरा है इस कमरा में एक बेड है।

पे बहुत अच्छा दिखा सजाया हुआ है अलग-अलग प्रकार से फूल है।

यहा पे एक लेडीज है वह येलो कलर साड़ी पहनी है और महक--

बाहर में ठो गाड़ी है और उसके बगल में भी एक ठो स्कूटी है ब्लू कलर का यहां पे रेड कलर का कार है रोड पर वहां पे ऑटो लगा हुआ है ग्रीन कलर का।

तीन आदमी फोटो खिंचवा रहे हैं और इसके एक पीला कलर का शर्ट पहना है एक व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का और मफलर बांधा हुआ है।

इस दृश्य में दिखाया गया है कि यहां पे बहुत सारा यहां कागज पत्तर है और यहां पे एक ठो लैपटॉप है।

रेड कलर का दोनों तरफ ईटा ईटा का बनाया हुआ है यहां पर येलो कलर से पेंट हुआ है।

वहां से यहां तक पूरा पाइप गया है और अगल बगल दोनो तरफ दीवाल है एक तरफ का दीवाल पकिया है एक तरफ का दीवाल कच्चा है ईंट का--

उसके बगल में उसके ऊपर झंडा बहुत सारा गड़ा हुआ है उसके नीचे गेट लगा हुआ है और एक ठो बल्टी है।

इस दृश्य में दिखाई दे रहा की यहां पे बड़ा दुकान है इसमें बहुत सारा रैक है।

बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहां पे है गाड़ी और उसके अगल बगल बहुत सारे नीचे में घास है।

और इसके बगल में नीचे नीचे बहुत सारा मूर्ति बना हुआ है और इसके दोनों तरफ में घर है बड़ा बड़ा।